एक मकान दिखाई दे रहा है जिसकी दीवाल का कलर येलो है यहाँ पे कुछ पोस्टर भी दिखाई दे रहें हैं कुछ डब्बे भी दिखाई दे रहे हैं | यहाँ पे कुछ भी दिखाई दे रही --

वहाॅं पे दुकान दिखाई दे रही है जिसमे बोहोत सारे पैकेट रखे हुए डब्बे भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं वहां पर कुछ लाइटे भी दिखाई दे रही हैं बल्ब भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

वहां पे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसकी दीवाल का कलर येलो वाइट है यहाँ पे नीचे आदमी भी दिखाई दे रहे हैं कमरे भी दिखाई दे रहे --